यहा से कुछ घर भी दिख रहे है | यहा पर कई सारे पेड़ लगे हुए है | यहा से टेम्पू और ओटो निकल रहे है |

लोगों की भीड़ यहां पर इखट्टी है जहां पर कुछ बोर्ड भी लगे हुए हैं | यहां पर दो शेर बने हुए हैं।

यहाँ पर एक लड़का डांस कर रहा है जिसने पैरों में काले रंग के जूते पहने हुए हैं सर पर टोपी लगायी है और हाथो में भी जूते पहन रखे हैं। यहाँ पर दो पाईप दिख रहे हैं।

यहाँ पर एक किला है। किले में कई सारे पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ एक दरवाजा है। कई सारी सीढ़ियाँ हैं। उन सीढ़ियों पर एक लड़का चढ़ रहा है जिसने पीले रंग की शर्ट पहनी हुई है।